रोड के किनारे ढेर सारे दुकान लगे हुए हैं।

रोड के किनारे हर दुकान के आगे लाइट लगा हुआ है।

यह एक पूल के नीचे का दृश्य है।

और नीचे फर्श पर ब्राउन टाइल्स लगा हुआ है।

और इस हॉल में ढेर सारा चेयर भी रखा हु--

और गार्डेन के दूसरी तरफ दो टंकी भी है।

और तीन चार घर भी हैं और गार्डन में ढेर सारे बच्चों के खेलने का सामान लगाया हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है दुकान का कलर व्हाइट है और दुकान के आगे ढेर सारा माला रखा हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है दुकान का कलर व्हाइट पुट्टी किया हुआ है।

और इस हॉल में ढेर सारे व्यक्ति भी हैं।

और इसकी बोर्ड पर जमशेदपुर स्कूल ऑफ़ आर्ट लिखा हुआ है।

यह एक हाइवे का दृश्य है इसके नीचे में प्लास्टर किया हुआ--

इस हाइवे के बगल में बाउंड्री में येलो और ब्लैक कलर किया हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है इसकी दीवार की कलर व्हाइट है।

दुकान के आगे एक पुरुष भी है।

यह एक कपड़े दुकान का दृश्य है।

इस दुकान में ढेर सारे अलमारी में रंग बिरंगी का कपड़ा सजा कर रखा हुआ है।

उसपर भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ है और ट्रक के नीचे एक बाल्टी रखा हुआ है।

और इसकी सीलिंग में एक मरकरी भी लगा हुआ है।

नीचे में प्लस्तर किया हुआ है।

और इस दुकान में ढेर सारे व्यक्ति भी बैठे हुए हैं।

यह एक कमरे का दृश्य है इसकी दीवार का कलर व्हाईट है और ऊपर में व्हाईट कलर किया गया है।

इस दुकान में ढेर सारा अलमारी लगाया हुआ है।

यह एक गार्डन का दृश्य है इसकी बोर्ड पर द टेनरिटी रिसोर्ट लिखा हुआ है।

और अगल बगल घास लगे हुए हैं और इस गार्डन में ढेर सारे विशालकाय पेड़ भी लगे हुए हैं।

और इस गार्डन के दूसरे तरफ गाड़ियां भी खड़ी हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है इसकी दीवार की कलर व्हाइट है।